इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि सामने एक घर का ढलाई हो रहा है जिसपे कई सारे मजदूर और बहोत सारे लोग यहां पर काम कर रहे हैं।

ऊपर में सोनाटा भी लिखा हुआ है सोनाटा का कई प्रकार से यहां पे ब्रांडिंग भी दिखाया गया है।

पीछे में बहोत सारा खेत है जिसमें बहोत ही हरियाली दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ लोग भी हैं और नीचे में अंडरग्राउंड भी दुकान है ऊपर भी दुकान है।

इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि सामने एक दुकान है जिसका नाम है मानसरोवर स्टेशनरी ।

इस फोटो में दिखाई दे रहा है की सामने दो लोग खड़े हैं और बहुत सारे लोग खड़े भी हैं और बहुत सारे लोग बैठे भी हैं।

ऊपर करकट का बना हुआ है और पीछे मकान पक्का का बना हुआ है।

और चारों तरफ पेंट वेट किए हुए हैं बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है ये क्लासरूम क्योंकि ये बच्चों का क्लासरूम है।

इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि एक क्रिश्चियन का यहां पर सभा लगा हुआ हैं जिसमें बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठे हुए और कई सारे लोग साइड में खड़े भी हैं।

यहां पर लाइट भी लगे हुए हैं पंखे भी लगे हुए हैं सामने एक ठो किचन भी है जोकि दिखाई दे रहा है।

सारे के सारे चीज एक तरह से सजा के रखे हुए हैं और ट्रे बनाकर रखे हुए हैं।